और हमें यहाँ कुहा भी छाया हुआ नजर आ रहा है यह दृश्य देखने में बड़ा ही सुन्दर और मन मोहक है।

यहां पर कुछ झंडे भी लहराते हुए देख पा रहे हैं आस-पास हमें पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें कुछ गाड़ियाँ भी रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं यहाँ पर हमें और भी अन्य दुकानें भी दिखाई दे रहीं हैं।

दृश्य में हमे चेयर टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही हम यहाँ चारो तरफ पर पंडाल भी लगा हुआ देख पा रहे हैं।